बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें है और ये बाजू में फ्लाईओवर का सीडी भी है।

बाजू में दो--

घास भी है और बाजू में बड़ा सा पेड़ भी--

बाजू में बड़ा दो दो मंजिल की बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर जाली है जाली के बाहर--

एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर एक--

ये एक चर्च है चर्च के अंदर बहुत सारे जीजस खड़े हैं और बैठे हैं।

ये एक अस्पताल का है हस्पताल के --